एक दुकान बहुत सारे फूल है जिसमे गेंदे के फूल है।

बहोत सारे आस-पास पे है टेबल में है।

--है दीपल पे हरे रंग का पेंट किया है और वॉल लाल रंग के है।